सामने लाइट के खंभे दिखाई दे रहा है जिसमे बहुत सारी लाइट की तारे लगी हुई है नीचे कुछ कार वगेरा खड़ी हुई है यह देख --

सामने एक लाइट का खम्बा दिखाई दे रहा है जिसपे बहुत सारी लाइट की तारें लगी हुई है ऊपर नीला आकाश देखा जा सकता है यह बिल्डिंग देखने में बहुत ही सुन्न --

यहाँ पर एक बहुत बड़ी सी मकान दिखाई दे रही है जो कि रेड कलर से पेंट किया हुआ है अगल बगल में और भी बहुत सारे पेड़ देखे जा सकते है।

सामने की ज़मीन में बहुत सारी हरी हरी घासें लगी हुई है यह देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा --